योग करते हुए कुछ मुर्तियां बनी है।

मैंगनी कलर के कई लोग पड़े लगे हैं।

और ये सब डॉक्टर का ड्रेस पेहने हुए हैं हरे कलर का कुछ लोग गॉगल्स भी पेहने हुए हैं।

हिल स्टेशन टाइप समथिंग है।